यहाँ एक लड़का खड़ा है जिसने पीछे बैग टाँग रखा है। उसकी बद्धि काली कलर की दिख रही है और उसने दोनों हाथ जेम पेंट की जेब में डाल रखे। पेंट नीला कलर का जीन्स का है। उसने सफेद कलर की शर्ट पहन रखी है और उसने काली कलर की घड़ी हाथ में बाँध रखी --

पीछे पेड पौधे दिख रहे हैं और कई लेडिसो ने शाल ओढ़ रखी है।

गमला दिख रहा है इसमें छोटा सा पेड़ उग रहा है।

यहाँ चार-पांच झूले दिख रहे हैं झूले की डलियाँ रंग बिरंगी कलर की दिखाई दे रही हैं झूला काला कलर का दिखाई दे रहा है और यहाँ कई सारे लोग हैं।

यहाँ एक हाथी दिख रहा है जो पानी में न्-जिसका सूंढ़ और उसके पेर हैं। उसके दो दाँत दिख रहें हैं जो सफेद कलर के दिखाई दे रहें हैं। हाथी के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने एक हाथ से लकड़ी प-कि हुई है उसकी आधी लकड़ी पानी में डूब रही --

पानी की बॉटल रखी हुई है और ऊपर ये दीवार जो सफेद कलर की दिख रही है। पीछे की दीवार सफेद कलर की दिख रही है। एक आदमी है इसने टोपी लगा रखी है।

यह एक लड़का है जो दूल्हा के जैसा सज़ा हुआ है उसने शेरवानी पहन रखी है उसकी शेरवानी गोल्डन कलर की दिख रही --

पत्ते दिख रहे हैं जो हरे कलर के दिखाई दे रहे।

दीवाल है जो गुलाबी और पर्पल कलर के पट्टा से खींची हुई है -है -है।